--नजर आ रहा है पार्क में एक ईगल का डिजाइन बनाया गया है पार्क को काफी अच्छा डेकोरेट किया गया है यहाँ पर कुछ-छ बॉउंड्री नज़र आ रही है।

की दुकान दिखाई दे रही है बुक की दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पर श्वेता बुक्स फॉर्म सेंटर एंड स्टेशनरी लिखा हुआ है अंदर काफी सारी बुक्स दिखाई दे रहे हैं।

सैलून लग रहा है यहां पर चेयर रखी हुई है चेयर का कलर काला दिखाई दे रहा है दीवार पर कुछ बलूंस लगाए हुए है।

पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में काफी सारे पौधे दिखाई दे रहे है यहां पार्क को अच्छे से डेकोरट किया गया है पीछे काफी सारी बिल्डिंग नजर आ रही है।

अंदर ए.टी.एम. के अंदर एक लड़का दिखाई दे रहा है। अंदर एक मशीन दिखाई दे रही है। अंदर दीवार पर कुछ ए.सी. दिखाई दे रहा है।

ए_टी_एम नजर आ रहा है ए_टी_एम के बहार एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड मेहरून कलर का दिखाई दे रहा है बोर्ड पर एक्सिस बैंक लिखा हुआ है यहाँ पर एक स्कूटी नजर आ रही है यहाँ पर एक कार दिखाई दे रही है।